दिख रे सामने हरी भरी घास उगी हुई दिखाय दे रही है यहा पर एक व्यक्ति खड़ा हुवा दिख रा हैंपास में एक रोड भी दिख रा है।

ये छत का रंग सफ़ेद उसपे सफ़ेद रंग की लाईट खड़ी है दुकान में कुछ दो लोग दिख रे जिन्होने नीले कलर की शर्ट और लाल कलर की शर्ट पहेनी हुई है।